हेलो दोस्तों यह एक कपड़े की दुकान है यहां पर काफी सारे लोग और एक औरत भी हैं इस कपड़े की दुकान का नया नया शुभारंभ हुआ है।

और यहां पर काफी सारे पंखे लगे हुए हैं लाइट्स से हैं और रंग बिरंगे कपड़े हैं बलूंस लगे हुए हैं।

और यहां पर कोई आदमी मास्क लगा केर रोड पर जा रहा है काफी सारी साइकल बाइक हैं।

और यहां पर काफी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहां एक पानी की बॉटल भी रखी हुई हैं और यहां पर नक्शा भी लगा हुआ हैं यहां पर लाइट बोर्ड भी रखा लगा हुआ है।

और यहां पर बाहर दुकाने भी है और यहां पर पार्किंग के लिए चद्दर लगे हुए हैं।

एस_के लेटेस्ट हेयर स्टाईल भूतनाथ मंदीर मार्केट गजानेर रोड बीकानेर मे है।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

और यह दुकान बीकानेर में है।

एक छत्ता टाइप लगा हुआ है और यहां पर काफी सारे फ्लाइटस हैं और यहां पर काफी सारे लोग --

यह एक न्यू इंडिया ड्राइविंग स्कूल बीकानेर का दृश्य है यहां पर --

इसमें एक आदमी एक औरत को बिठाकर धक्का लगा रहा है यहां पर--

चाप कहते हैं और यहां पर सफाई अभियान चल रहा है एक आदमी हाथ में झाड़ू लेकर कचरे --

यहाँ पर जूते चप्पल सब तरह के सामान मिलते हैं और यहाँ पर कई सारे आदमी हैं कई सारी बाइके भी खड़ी हैं।